नीचे हरियाली दिखाई दे रही। सांफ़ मैंदान दिखाई दे रहा। बोहोत दूर-दूर का सीन स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

हमें रिसेप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए और भी कागजात रखे हुए हैं। कागज वगेरा रखे हुए हैं। फाइल्स रखे हुए हैं।

एंड यहां पे टेबल रहे --

यह हमें थिएटर या सेमिनार हॉल जैसा दिखाई दे रहा हैं। यहाँ पे लाइन से --

बोहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं। ब्लू कलर की एक्टिवा दिखाई दे --

यहाँ पे तीन पर्सन खड़े हुए है। तीनो ने हाथ मिलाये हुए है। फोटो निकाल रहे के तीनो।

इन्होने ड्रेस्सेस पेहना हुआ डांस कर रही है। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस कोई प्रोग्राम हो रहा है।

बोहोत ही सुन्दर दिख रही। शादी हो रही है। कुछ फंक्सन हो रहा है अन्दर पे ।

यहाँ हमें शोरूम दिखाई दे रहा है। यहाँ फ्रिज का शोरूम दिखाई दे रहा। हमें एलइडी का शोरूम दिखाई दे रहा --

पूरा इलेक्ट्रोनिक्स का दिखाई दे रहा है एल.इ.डी. लाइन से लगी हुई है।

सुखा हुआ दिखाई दे रहा है कही-कही। कही-कही हरियाली दिखाई दे रही है।

पार्लर है। यहाँ पे एक पर्सन बैठे हुए हैं। उनको एक कपड़ा ओढा दिया गया है। उनकी हेयर कट की जा रही है।